एक पोल है पोल पर तार लगाए गए हैं एक आदमी है रोड के ऊपर खड़ा है दो और--

एक दुकान दिखाया जा रहा है दुकान के बाहर एक छोटा सा दुकान दिखाया जा रहा है छोटा-मोटा शॉप --

इसमें फल वल सभी ये सीढ़ियाँ हैं एक और बगल में --

और भी बैटरी सूट्री से कुछ परफ्यूम टाइप्स के हैं एक बोतल है दुकान है छोटा-मोटा जिसके ऊपर--

इसमें राधे कृष्ण की मूर्ति है उसे कवरप किया गया है। रेड कलर का--

हॉस्पिटल टाइप का कुछ दिखया जा रहा है ।

नीले टाइप के दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट फोटो वोटो टंगे--

एक जंगल दिखाया गया है बहुत ही बड़ा सा--

एक पुराना सा महल टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें बहोत पुराने पुराने महले हैं।

अ छोटे-मोटे कंकड़ पत्थर चट्टान मिट्टियाँ--

एक दुकान दिखाया जा रहा है बहुत बड़ा सा--

जंगल टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें बहोत बड़े बड़े वृक्ष हैं।

पूल है जिस पर लाइट वाइटिंग का लाइट वाइट जलती है। रेड ब्लू येलो --

एक बड़ा सा नदी दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे पानी है छोटे-छोटे ब्रिच है हरे भरे ग्रीन ग्रीन कलर के--

हम्म वो भी उसमें डेकोरेटेड टाइप्स का किया गया है रोड है विंडोस खिड़कियाँ दरवाजे हैं ।

जो बैग लिए हुए हैं एक और सीढ़ी है बहुत सारे दुकानें दिख रही है तारे दिख रही है।

फ्लैट टाइप का दिखाया जा रहा है फ्लैट के पीछे का बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है जिसमें लोहा का ग्रिल का --

गेट बनाया गया है एक बोरा रखा हुआ है ।

एक रूम है रूम पर दो बेड है बेड ब्लैक ब्लैक उसमें गद्धे बिछे हुए हैं।

बॉटल वॉटल सामान वमान रखी गए जिसे काँच से--